यह एक पुरानी बिल्डिंग की तस्वीर है।

तीन आदमी भी बैठे हुए है।

इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का बोर्ड ऑरेंज कलर का है।

चेयर पे एक आदमी बैठा हुआ है।

सामने एक रेड लाइट दिख रही है।

एक आदमी सफेद शर्ट और पैंट में खड़ा है।

एक ग्रीन कलर का बोर्ड दिख रहा है।

आगे तीन स्टैंड रखे हुए हैं।

नीचे कुछ टेबल और चेयर्स रखी हुई है।

यह एक रेलवे स्टेशन की तस्वीर है।

यह किसी होटल और रेस्टोरेंट की तस्वीर है।